ये पूरा कॉलेज येलो कलर से पुता हुआ है इससे कॉलेज से की दोनों दीवारों के साइड में यहाँ पर रेलिंग जैसी लगी हुई दिखाई दे रही है और अंदर पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

कुछ डिब्बा-डिब्बी यहाँ पर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपर यहाँ पर बहुत सारी लाइट भी लगी हुई हमको दिखाई दे रही है।

ये हमको छै मंदिर दिखाई दे रहें हैं। इस सभी मंदिर सेम हैं और सेम कलर से पुते हुए हैं और इनमें सेम खिड़कियाँ लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमको एक नदी दिखाई दे रही है नदी मे ऊपर यहा पर रेलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है नीचे यहा नदी मे बहोत सारा पानी भरा हुआ--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

यहाँ पर हमको एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा है ये चारों तरफ से बिलकुल सेम दिखाई दे रहा है इसमें सेम सेम आमने-सामने घर जैसे डिब्बे भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहा बहुत सारी टी-शर्ट टंगी हुई दिखाई दे रही है कुछ टी-शर्ट यहा पर आसमानी कलर की दिखाई दे रही है कुछ व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है और कुछ रेड कलर की दिखाई दे रही है।